यहाँ पर एक दुकान है जिसमें आगे की तरफ अलमारी लगी हुई है उसमें --

रंग सफ़ेद रंग का हैं और आस नीले रंग से पैंट हुई है। राज्यपथ उसपे लिखा हुआ है। एक आदमी उपर चढ़ रहा हैं जिसने पीली जैकेट पहनी है।

पौधे लगें हुए हैं और यहाँ आगे कि तरफ मंदिर बना हुआ है। ऊपर लाइट लगा हुआ है। झंडा लगा हुआ है। रेलिंग बनी हुई है।

पर बोर्ड लगा हुआ है जिसपर गोली बड़ा --

हैं और इसपर यहाँ पर प-पैंट हुआ हैं और लिखा हुआ हैं भोजन से पहले शीघ्र के बाद --

और काउंटर के ऊपर बोतल रखे बोतलें रखी हुई हैं पानी की। क्यू.आर. कोड रखा हुआ है फ़ोनपे का।

खड़ा हुआ है जिसने पगड़ी लगाई हुई है। पीले रंग की शर्ट पहनी हुई है। सदरी पहनी हुई हैं।

यहाँ पर एक दुकान है। शटर खुला हुआ है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है लाल रंग की शर्ट और पैंट पहन करके। अंदर की समा --

छाते रंगें हुए हैं। छातों पर रंग बैंगनी रंग का पीले रंग का लाल रंग का है।